काली माता की मूर्ति है।

दिवाल पर सफेद रंग व नीले रंग की गुब्बारे लगे हैं सफेद व पूरी फर्श है।

तीन सोफे भी पड़े हुए हैं।

प्लेटफारम पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ी इमारत है।

उस पर तीन और लाल रंग के लगे हुए हैं।

और तीन लोग खड़े हुए हैं।

कुछ चॉकलेट भी दिख रही हैं।

हार्पिक का डिब्बा भी दिख रहा है।

और योगा मैट भी बिछी हुई है।